छोटे-छोटे पौधा दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में घर दिखाई दे रहा हैं।

छोटे-छोटे पौधा दिखाई दे रहा हैं।

जमीन दिखाई दे रहा हैं घर का कलर --

इस तस्वीर में पानी दिखाई दे रहा है पानी का तेज लहर दिखाई दे रहा हैं।

फूल दिखाई दे रहा हैं पेड़ पौधा दिखाई दे रहा हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं।

दो एयर कंडीशन दिख रहा हैं।

सामान दिख रहा हैं काला टंकी दिख रहा हैं पाइप दिख रहा हैं ईटा दिख रहा हैं खपड़ा दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं तीन कुर्सी दिख रहा हैं आदमी दिख रहा हैं।

बोतल दिख रहा हैं टेबल दिख रहा बेंच दिख रहा हैं।

आदमी दिख रहा हैं एक आदमी काम कर रहा हैं।

फूल से सजाया बस दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं आदमी दिख रहा हैं तीन चार आदमी और दिख रहे हैं गेट दिख रहा हैं।

अम्म बास-बल्ला दिख रहा हैं।

ऊपर आसमान दिख रहा हैं धरती दिख रहा हैं।

तीन-चार बेंच दिख रहा हैं लड़की बैठी हुई दिख रही हैं शीशा दिख रहा हैं खिड़की--

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं।

एण्ड लॉकर दिख रहा हैं छोटे-छोटा अम्म डब्बा दिख रहा--

ए_सी दिख रहा हैं पंखा दिख रहा हैं समान दिख रहा हैं।

जमीन दिख रहा हैं ऊपर आसमान दिख रहा --

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है बड़ा नाव दिख रहा है नाव पर छतरी दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

पंखा दिख रहा हैं आदमी दिख रहा हैं औरत दिख रहा हैं।

हाथ में सब किताब लिए हुए दिख रहा हैं दो कुर्सी दिख रहा हैं जमीन दिख रहा हैं।

यह शीशा दिख रहा हैं खिड़की के सामने पेड़ पौधा दिख रहा हैं तस्वीर दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं अगल-बगल पार्क दिख रहा हैं।

नीचे एक इनार जैसा गोल दिख रहा हैं घेरा वहाँ दिख रहा हैं।

बौगी दिख रहा हैं चक्का दिख रहा हैं।

अम्म जमीन दिख रहा हैं ढेर सारी सामान दिख रहा हैं।

अगल-बगल का रेट दिख रहा हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं।

शीशा का गेट दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

ढेर सारे तस्वीरें दिख रहे हैं।

अम्म जमीन पर आदमी दिख रहा हैं तीन चार आदमी बैठा हुआ दिख रहा हैं ऊपर लाइट बर रहा हैं।

देवाल पर बोर्ड दिख रहा हैं खिड़की दिख रहा हैं घर दिख रहा हैं रोड दिख रहा हैं रोड पर बाइक दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में घर दिख रहा हैं।

ढेर सारीज़ आदमी दिख रहा हैं दो-तीन कुर्सी दिख रहा हैं आदमी बैठा हुआ दिख रहा हैं।

तस्वीर में घर दिख रहा हैं हरा गेट दिख रहा हैं।

दीवाल पर डिजाइन दिख रहा हैं नीचे जमीन दिख रहा हैं।

घर दिख रहा है घर में सामान दिख रहा है जिम की ढेर सारी सामाने दिख रही हैं।

आदमी दिख रहा हैं हरे भरे--

केला टंगा हुआ दिख रहा हैं अंगूर दिख रहा हैं सेंब दिख रहा हैं कैरेट दिख रहा हैं ढेर सारी आदमी दिख रहा हैं।

सामान दिख रहा हैं साड़ी टंगा हुआ दिख रहा हैं ढेर सारे न--

आदमी दिख रहा हैं दो कुर्सी दिख रहा हैं टेबल दिख रहा हैं।

लड़की दिख रहा हैं टेबल दिख रहा हैं।

मंदिर के बगल-अगल दीवाल पर तस्वीर दिख रहा हैं टेबल दिख रहा हैं।

स्टील के बड़ा-बड़ा सामान दिख रहा हैं अगल-बगल लाइट दिख रहा हैं बोर्ड दिख रहा हैं।

घर दिख रहा है घर में देवाल पर ढ़ेर सारा लिखा हुआ चित्र दिख रहा है।

सामान दिख रहा हैं लाइट दिख रहा हैं लोहा का पंप दिख रहा हैं।